और दो चार बाईकें दिख रही हैं।

इसमें मुझे अलग अलग प्रकार की मछलियां दिख रही हैं।

एक औरत मछली खरीदती हुई दिख रही है।

यह यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें मुझे सुंदर दीवारें दिख रही हैं।

इसमें मुझे कुछ पेड़ पौधे दिख रही है।

जिसमें मुझे बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

यह एक स्कूल है इसमे मुझे कुछ बच्चे दिख रहे है।

और साथ में एक नल भी दिख रहा है।

अजी यहां एक फोटो स्टेट की दुकान हैं।

यह एक बहोत बड़ी कार वॉस सॉप है।

जिसमें मुझे एक बहुत बड़ा गेट दिख रहा है।

और एक पुलिस वाला भी दिख रहा है।

और दो एक खंभा भी दिख रहा है।

जीसमें हमें कुछ दुकानें बंद दिख रही है।

और कुछ एक फैमिली इसमें इंजॉय कर रही है।

और बड़े बड़े विशाल पत्थर भी दिख रहे है।

यह यह एक मस्जिद है।

बहुत सुंदर टाइल्स दिख रही है।

यह एक यशोदा कॉम्प्लेक्स है।

एक व्यक्ति आग को शायद बुझा रहा है।

जैसे कि लाल गुलाबी व्हाइट और सुंदर सुंदर लाइटे भी हैं।

जिसमें मुझे छे व्यक्ति दिख रहे हैं।

और बहोत सारी लीची लीची डाल रखी है।

इससे मुझे इस्कॉर्ट एफ ट्वेंटी दिख रहा है।

यह एक गुरुकुल ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल है।

ए_सी भी दिख रही है।

वो सुंदर सजा काउंटर माले से भी दिख रहा है।

यह एक बहुत सुंदर सैलून है।